ये एक ऑफिस है और यहां पे--

एक प्लेट है और कुछ कार्ड्स वगैरा है।

एक रूम है और यहाँ पे कुछ उम्म उम्म पोस्टर्स लगे हुए हैं।

एक ने ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी हुई--

ये एक स्कूल सा लग रहा है और यहां पे कुछ अ--

उसके बालों का रंग काला है और साथ में ही दूसरा आदमी है उसने--

ये चार लोग बैठे हुए हैं और टेबल पे टिशु होल्डर है और उनके सामने--

और सामने एक दीवार है और ये दरवाजे के साथ बांधी हुई है।

और वो टोकरियों में भी कुछ सब्जियां भरी पड़ी है।

एक रेड कलर का बोर्ड लगा है जिस पे सेल लिखा है।

ये एक शॉप है और यहां पे--

जो कि ब्लैक और व्हाईट है और ग्रे कलर की है।

ये यहां पे मदर टेरेसा के स्टूडेंट्स है।

और इन्होने व्हाइट साड़िया पेहनी हुई है।

और यहां पे दो लोग नजर आ रहे--

लेटा हुआ है और इसने व्हाइट शूज पहने हुए हैं।